इस पिक्चर में बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है जहाँ कार और बस है।

अलग बगल से कई सारे इंडियन है हरे रंग के लाल रंग के उसके किनारे एक बोट है और हरियाली है।

इस तस्वीर में कई सारी चेयर्स है कलर की।

इस तस्वीर मैं हरियाली है तीन घर है बालक है एक--

इस तस्वीर में एक मंदिर है जो बडीही खुबसूरती से डिजाइन किया गया है हरा भरा पेड है सीडिया है ब्लू गेट है व्हाइट कलर का रंग है।

इस तस्वीर में कई सारी छे पांच छे गाड़िया है डोमिनोस है।

सीडिया है खुला आसमान है हरा भरा कई सारे पेड है सुंदर।

सलून है बुटीक है घर है खिड़किया है एक रोड साइड का कलर ग्रे है।

इस तस्वीर में भगवान हैं सफेद रंग के जिनपे गेंदे के फुल की माला चढ़ी है ऊपर टिन है नीले रंग की आस पास घासें हैं हरे हरे रंग --

इस तस्वीर में नदी के किनारे कई सारी फ़ैक्टरिया है हरी भरी सी।